सेन्टर दिखाई दे रहा है नीचे लाल रंग के खाने बने हुए है और कुछ काले काले दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

कुछ जूस पीने वाले नलकियां रखी हुई है मिक्सी के जार रखे हुए हैं साइड में --

पर्दे भी दिखाई दे रहे हैं नीचे लाल रंग का मैट बिछा हुआ है।

निम का पेड़ खड़ा है और उसके साथ में एक सीढ़ी भी है ऊपर कुछ आसमान दिखाई दे रहा है।

यहां पर सड़क दिखाई दे रही है सड़क काले रंग की है और साइडो में--

यहाँ पर टी_वी_एस की दुकान दिखाई दे रहीं हैं जहाँ तीन मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं और उसके सामने कुछ--

और कुछ टाइलें भी दिखाई दे रही हैं पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और एक नीले--

मशीन ले जाती हुई क्रेन दिखाई दे रही है रोड पे साइड में सफेद रंग की किनारियां है और परली--

यह एक कारपेट की दुकान है जहां पर सामने कुछ रस्सियां पे कारपेट और--

यह एक दुकान दिखाई दे रहीं हैं जिसमें--